hosting git repositories पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: * git repository hosting services
* github account बनाना
* github में एक रेपॉसिटरी बनाना और * रेपॉसिटरी में एक tag बनाना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1404 और firefox web browser
आप अपनी पसंद का कोई भी browser उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial के लिए आपको एक कार्यकारी internet connection की ज़रूरत होगी
आपको git commands की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए
यदि नहीं तो सम्बन्धित git tutorials के लिए कृपया प्रदर्शित link पर जाएँ
पहले git repository hosting services के बारे में सीखते हैं
बहुत based web आधारित hosting services उपलब्ध हैं जैसे bitbucket cloudforge और github
यहाँ आप अपनी git repositories मुफ़्त import कर सकते हैं
ये आपकी रेपॉसिटरी share करने के लिए एक केंद्रीकृत स्थान देते हैं ताकि बहुत से लोग एक project में आसानी से सहयोग कर सकें
ये आपको अन्य projects को मुफ़्त download और अध्ययन करने की अनुमति देते हैं
आगे देखेंगे की github का उपयोग हम क्यूँ करेंगे
github open source सॉफ्टवेअर रखने के लिए बहुत लोकप्रिय website बन गया है
github में आप प्रभावी रूप से अपनी team के साथ बदलावों को देखना उनकी चर्चा और रिव्यु कर सकते हैं
github में उपयोग हुई प्रक्रिया अन्य मुफ़्त git hosting websites के समान होगी
आप उनका बाद में अपने आप अन्वेषण कर सकते हैं
आगे हम सीखेंगे कि github में एक account कैसे बनाते हैं
अपना web browser खोलें और www github com पर जाएँ
यहाँ homepage में आपको registration के लिए अपना विवरण देना है
यूज़रनेम में मैं type करुँगी: priyaspoken और
gmail id में priyaspoken @gmail com
कृपया अपनी पसंद का यूज़रनेम और valid email id type करें
फिर मैं अपना password type करुँगी
आप अपनी पसंद का कोई भी password दे सकते हैं
अब नीचे दायीं तरफ sign up for github button पर click करें
आगे step 2 में हमें अपना plan चुनना है
मैं free plan चुनूँगी क्योंकि मैं मुफ़्त service उपयोग करना चाहती choose
अब finish sign up button पर click करें
आगे हम github में एक रेपॉसिटरी बनायेंगे
आप दायीं तरफ के box में new repository button देख सकते हैं; इस पर click करें
यह एक message please verify your email address दिखाता है
github आपकी registered email id पर एक प्रमाणीकरण mail भेजेगा
अतः हमें अपना जीमेल account खोलना है और इस email पर click करें जो github द्वारा भेजा गया
मैंने अपनी emailid में पहले ही साइनइन कर लिया है जो github में registered है
अब मैं इसे खोलती हूँ
मेरे पास github का एक email है
मैं इस पर click करती हूँ
subject line बताती है please verify your email address
अगर वो mail आपके inbox में नहीं मिलता है तो कृपया अपने spam या junk folders check करें
अब verify email address button पर click करें
हम github homepage पर we जाए जायेंगे
यह दिखाता है कि हमने github में सफलतापूर्वक अपना account बना लिया है
हम github में एक रेपॉसिटरी बनाने की कोशिश करेंगे
अब दायीं तरफ के box में new repository button पर click करें
आप देख सकते हैं कि अब हम रेपॉसिटरी बनाने में सक्षम हैं
अब type करें: repository name में stories
अगर आप रेपॉसिटरी के बारे में कोई विवरण देना चाहते हैं तो हम ऐसा यहाँ कर सकते हैं
आगे मैं public विकल्प चुनूँगी जो मुफ्त है
अगर हम private विकल्प चुनते हैं तो हमें अपनी रेपॉज़िटरी को प्राइवेट रखने के लिए कुछ fees देनी पड़ती है
जिसका मतलब कि अन्य users हमारी रेपॉज़िटरी को प्राप्त और download नहीं कर सकते हैं
मैं दोबारा public पर click करती हूँ
initialize this repository with a readme checkbox पर click करें
यह एक readme फ़ाइल बनाएगा
इस फ़ाइल में आप code या संस्थापन installation निर्देशों के उपयोग के बारे में जानकारी लिख सकते हैं
यह सभी सहयोगियों के लिए उपयोगी होगा
यद्यपि अगर हम मौजूदा रेपॉज़िटरी importing कर रहे हैं तो यह box अनचेक होना चाहिए
अब create repository button पर click करें
आप देख सकते हैं कि यूज़रनेम के साथ repository name सफलतापूर्वक बन गया है
एक बार जब रेपॉज़िटरी बन जाती है तो आप बायीं तरफ नीचे readme फ़ाइल label देख सकते हैं
हम बाद में इस फ़ाइल में कुछ जानकारी लिखेंगे
default रूप से हम एक commit जोकि initial commit है एक branch जोकि master branch है और एक contributor देख सकते हैं
आप प्रत्येक link पर click कर सकते हैं और अपनी सहूलियत के अनुसार उनका अन्वेषण कर सकते हैं
अब इस रिपॉज़िटरी में कार्य करना शुरू करते हैं
हम अपनी रेपॉज़िटरी पर एक फ़ाइल जोड़ना शुरू करेंगे
मध्य panel पर new file button पर click करें
फ़ाइल बनाने के लिए एक नया form खुलता है
यहाँ मैं फ़ाइल का name kidsstory html टाइप करुँगी
मैं अपने पहले सेव किए हुए writer document से इस फ़ाइल में कुछ code copy और paste करुँगी
उसी प्रकार आप अपनी फ़ाइल में कुछ विषय वस्तु लिख सकते हैं
अब इस नई फ़ाइल को commit करते हैं
commit message देने के लिए पेज पर नीचे जाएँ
यहाँ commit message क्षेत्र में आप default message create kidsstory html देख सकते हैं
आप default message रख सकते हैं या एक नया message type कर सकते हैं
मैं default message रखूँगी
यहाँ अगले क्षेत्र में आप commit का विस्तारित विवरण भी दे सकते हैं
अतः यहाँ मैं type करुँगी: added first file of the repository
default रूप से हम master branch में commit करते हैं
अब commit new file button पर click करते हैं
हमारी नई फ़ाइल kidsstory html रेपॉज़िटरी में जोड़ी गई है
ध्यान दें कि अब commit number बढ़ कर 2 हो गया है
अब इस पर click करते हैं
यहाँ आप commit message के आगे तीन dots देख सकते हैं
मैं इस पर click करती हूँ
यह commit का विवरण दिखाता है
हमने commit में क्या किया है यह जानने के लिए उस विशेष commit message पर click करें
अब आप commit का विवरण देख सकते हैं
अब commit सूची पर वापस जाते हैं
इसके लिए browser के ऊपरी बाएं कोने पर बाएं arrow button पर click करें
दायीं तरफ़ आप commit की hash value देख सकते हैं
रेपॉज़िटरी पर वापस जाने लिए ऊपरी बायीं तरफ code टैब पर click करें
आगे मैं दिखाती how कि github में एक नई branch कैसे बनाते हैं
बायीं तरफ आप branch नामक drop down सूची देख सकते हैं
नई branch बनाने के लिए इस पर click करें
आप देख सकते हैं कि एक popअप window खुलती है
popअप window में आप find or create a branch क्षेत्र देख सकते हैं
नई branch के name में मैं type करुँगी newchapter और enter दबाउंगी
आप देख सकते हैं newchapter branch बन गई है और यह हमारी वर्तमान branch है
आगे branching प्रक्रिया को बेहतर समझने के लिए हम newchapter branch में एक commit बनाएंगे
अब प्रदर्शन के लिए kidsstory html फ़ाइल में कुछ बदलाव करते हैं
रेपॉज़िटरी में kidsstory html फ़ाइल पर click करके इसे खोलें
editor panel के ऊपरी दाएं कोने पर आप एक edit icon देख सकते हैं
इस फ़ाइल को edit करने के लिए इस पर click करें
मैं यहाँ कुछ लाइनें जोडूँगी जो मैंने अपने writer document से copied की हैं
आप इसी तरफ कर सकते हैं
अब हम इस बदलाव को commit करेंगे
मैं default commit message को ऐसे ही रखूँगी
यहाँ आप branch का name newchapter देख सकते हैं जहाँ यह commit बनाया गया था
commit करने के लिए commit changes button पर click करें
अपनी रेपॉज़िटरी पर वापस जाने के लिए code टैब पर click करें
आगे master और newchapter branches के commits को जाँचते हैं
commits link पर click करें
यहाँ branch drop down में हम उस branch का name चुन सकते हैं जो हम देखना चाहते हैं
मैं सूची में master branch चुनूँगी
एक बार जब यह चयनित हो जाता है तो master branch के commits सूचीबद्ध किए जायेंगे
newchapter branch के commits को देखने के लिए हम branch drop down में newchapter चुनेंगे
अब आप newchapter branch के commits देख सकते हैं
tab अपनी रेपॉज़िटरी पर वापस जाने के लिए code टैब पर click करें
आगे देखते हैं github में एक tag कैसे बनाते हैं
हमें पहले से ही पता है कि tagging commit stage को इम्पॉर्टेन्ट महत्वपूर्ण mark करने में उपयोग किया जाता है
उदाहरण के लिए मानिए मैं kidsstory html फ़ाइल जोड़ने के बाद master branch में एक tag बनाना चाहती हूँ
tag बनाने के लिए पहले releases link पर click करें
create a new release button पर click करें
एक नया form खुलता है
tag version box में type करें v10
release title box में type करें version one
write box में हम अपने tag का विवरण दे सकते हैं
मैं type करुँगी: this is the version one
अब publish release button पर click करें
यहाँ बायीं तरफ आप नवीनतम commit की hash value देख सकते हैं
हमें पहले से ही पता है कि tag नवीनतम commit में बनाया जाएगा
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इसे सारांशित करते हैं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
* online git hosting services का महत्व
* एक github account बनाना
* github में एक रेपॉज़िटरी बनाना और * रेपॉज़िटरी में एक tag बनाना
एक नियत कार्य में
github में एक रेपॉज़िटरी बनाएं
रेपॉज़िटरी में कुछ files जोडें
files को edit करें और कुछ commits करें और रेपॉज़िटरी में branches और tags बनाने की कोशिश करें
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है
कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online tests pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें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
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने धन्यवाद